एक पर्सन दिखाय दे रहा है जो कि टेबल के पास खड़े हुए हैं। परदे और फ्रोक्स दिखाय दे रही है चेक्स वाले --

ये अभिव्यक्ति की पिक्चर नजर आ रही हैं जिसमे जेंट्स लेडिज सभी लोग गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं और अ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं।